कुछ लकड़ी की बनायी टेबले कुर्सिया दिखाई दे रही हैं कुछ लाइटे दिखाई दे रही हैं कुछ गुब्बारे भी दिखाई दे रहे है।

उनके पीछे दीवाल के पास मुझे एक बड़ा गेट दिखाई दे रहा है और पास में एक लकड़ी का बना गेट दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे कुछ इंजीनियर दिख रहे हैं जो कोई रेलिंग निकाल रहे हैं उनके हाथों में कुछ इंच टेप और कुछ --

इस तस्वीरा में इस तस्वीर में मुझे सामने की तरफ कुछ डब्बे दिखाई दे रहे हैं जो कई --

दुयो के और कुछ वेश फेसवॉश वारे डब्बे दिखाई दे रे है एक क्रीम वाले डिब्बे दिखाई दे रहे है ऐसा लग रहा है कोई --

इस तस्वीर में मुझे सामने की तरफ दीवार पे कुछ तस्वीरे लगी हुई दिखाई दे रही है कुछ --

लाइटे भी दिखाई दे रही हैं।

इस दुकानों के जो गेट हैं जो शीशे से बने बाहर की तरफ कुछ लकड़ी की बनी हुई टेबले दिखाई दे रही है बड़े बड़े पोस्टर दिखाई दे रहे हैं।

जो मरीज से दिखाई दे रहे हैं जिसके अंदर कुछ लाइटे भी लगी हुई है कुछ कांच के डब्बे जैसे किप्पन जैसे दिखाई भी दे रहे है।

कोई वस्त्र बेचती हुई दिखाई दे रही है कुछ छोटे बच्चे भी दिखाई दे रात हैं ऐसा लग रहा है कोई स्कूल है ये तो।

इस तस्वीर में मुझे कुछ अलमारियों के अंदर बैंकें और कुछ पंखे और छाछ बनाने वाली मशीनें भी रखी हुई दिखाई दे रही है।

कुछ कार्टून दिखाई दे रहे एक दीवार पे झंडा भी लगा हुआ है एक पंखा दिखाई दे रहा है कुछ लाइटें दिखाई दे --